जोकी बहोत सुन्दर लगरा है यह पर देखिये कितना अच्छा लगरा है यहा पर की शकस खड़ा हुआ है जोकी बहूत बढ़िया है। देखने मे--